जो काफी लाइटिंग --

आदमी काम कर रहे हैं।

ऊपर में काम कर रहे है एक नीचे में काम कर रहे है।

एक लेबर भी हैं।

लूंगी कमीज माथे में टोपी लगाए सभी लोग यहां पे --